दिए गए चित्र एक शादी के मंडप का है जहाँ लड़का-लड़की दोनों बैठे हुए है।

अपने प्राथना भवन में आनंदित करूँगा क्योंकी मेरा भवन सब देशो के--

ये लोह जिसमे एक दो खड़े है एक व्यक्ति बाजू के ऊपर खड़ा हुआ है एक व्यक्ति सर के ऊपर--

बेंचे लगी हुई है लाइन से और बेंचो के पीछे बच्चे नीली ड्रेस में कागजों को काट के कुछ चित्र बना रहै --

पीछे पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ है ऊपर दूधिया --